लगी हुई है कुछ में भी सामान है क्रीम पाउडर कॉस्मेटिक का ही सामान लग रहा है। बच्चो का भी खाने का समान है यहाँ पे एक टिफ़िन है यहाँ पे --

यहां पर नजर काफी दिलचस्प है यहां पे एक लंबे लोहे की लकडिया अच्छी लगी हुई--

गार्डन है यहाँपे येलौ कलर के फूल लगे हुए है। गार्डन में हम्म एक सरोवर सा है यहाँ पे और कुछ पानी है यहाँ पे और भी पेड़-पौधे आसमान का कलर वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है।